ये पूरा अच्छा सा गार्डन जैसा मैदान दिख रहा हैं ।

उसमें बहुत सारे अह मिट्टी दिख रही है नीचे।

और पुराना पुराना ऐसा अ खंडेर दिख रहा है।

ये एक तलाब जैसा है और पत्थर में से झरने के जैसे पानी आ रहा है।

अंदर ये एक आदमी और एक लेडिज अंदर दिख रहे हैं बाहर दो स्कूटर लगे हुए स्कूटी और एक पीछे--